यह एक रेस्टोरेंट है यहां पे बहुत खाली जगह पड़ा हुआ है।

और बहोत सारी पर्दे पे फूल लगा हुआ है।

यह एक ऑयल एजेंसी है रामगढ़ इंडियन ऑयल यह एक वाइट कलर से कलर किया गया है और आगे --

और एन_सी_बी लगी हुये है और कुछ लॉकर भी लगाया गया है।

काले काले पैंट पेहने हुए हैं और लोअर टीशर्ट भी पेहने रखे हैं।

और ये बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

और ये सड़क है सड़क पे कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है सड़क के किनारे बहुत सारे घासें जमी हुई हैं।